यह एक जंगल सा लग रहा है और यहां रोड पे दो साइकल खड़ी हुए हैं। और साइकल का सीट काला है और साइकल के दो पहिए है।

यहां पर एक बहोत शानदार महल है जिसके बाहर--

तीन आदमी खड़े हुए हैं और महल के सामने एक गाड़ी भी है और महल के अंदर लाइट जल रही है।

यहां पर एक गाड़ी है और एक आदमी उस गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा है और आदमी ने--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

यहां बहुत बड़ा घर है इस घर में लाइट जल रही है घर के बाहर एक खंबा है उस खंभे पर लाइट --

यहां पर बांध का काम चल रहा है यहां बहोत सारे गंज है और बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं यहां नली और गंज हैं।

गिटार भी है और टेबल पर कुछ--

यहां पर एक रूम है इस रूम में चार कुर्सियां हैं एक कुर्सी पर एक लड़का मोबाइल देख रहा है और टेबल पर कुछ बोतल और कुछ सामान पड़ा हुआ है और लड़के ने लाल कलर के शूज पहने हुए हैं।

यहां पर एक फोर व्हीलर खड़ी है उस फोर व्हीलर का चाक निकल गया है और आसपास बहुत ही सामान पड़ा हुआ है।

यहां पर पब है पब में बहुत सारी लड़कियां ना चाहिए एक लड़की--

ब्लैक शॉर्ट में नाच रही है और कुछ लड़के गाने बजा रहे हैं।